यह एक उद्यान लग रहा है जहां पर काफी हरे भरे पेड़ नजर आ रहे --

यहां पर लेबर अपने कार्य में व्यस्त नजर आ रहे --

यह हनुमान जी का बहुत पावन मंदिर नजर आ रहा --

सर मिक्सर दिखाई दे रहा--